ये एक स्टेचू बना हुआ है गोल सर्कल पत्थर के ऊपर जो सीमेंटेड कलर का है एक औरत है जो पानी डाल रही हैं |

इसमें ट्रैक्टर से लोग कुछ दवाई डालके धुआँ उड़ा रहे है एंड आस - पास पेड़ लगे हुये है ट्रैक्टर का कलर रेड नज़र आ रहा हैं।

ये सबसे फर्स्ट फ्लोर पे बैंकुएट हॉल है जिसकी जो मिरर है खिड़की का --